मंदिर के बाहर में फूल घंटी लगा हुआ है घंटी का कलर सब लाल है।

एक साइकिल खड़ा है साइकिल का कलर ब्लैक है।

यह एक मंदिर का दृश्य है बहुत यहां पे बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

एक चप्पल पहना हुआ है चप्पल का कलर किया है।

बहुत सारे पानी निकल रहे हैं पानी का कलर सफ़ेद है।

यह चूड़ी है चूड़ी का डब्बा का कलर सफ़ेद है।

उसके बगल में पेड़ है पेड़ का कलर ग्रीन है।

एक औरत बैठी हुई है और लाल कलर का साड़ी पहनी हुई है।

यह एक मिथिला बुक सेंटर का दृश्य है जहां पे बहुत सारे बुक रखे हुए हैं।

एक आदमी बुक लेने के लिए खड़ा है उसने ब्लैक कलर का पजामा और ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है ।

एक झंडा है झंडा का कलर येलो है बहोत सारी लाइट है लाइट का कलर सफेद है।

यह एक नृतिका का दृश्य है जहां पे बहोत सारे आदमी नाटक या नृत्य कर रहे हैं एक लड़की के हाथ में झंडा है झंडा का कलर ऑरेंज सफेद और ग्रीन है।

उसके ऊपर में लाइट लगे हुए हैं लाइट के कलर ब्लैक है।

एक लड़की है लड़की के हाथ में येलो कलर का प्लास्टिक है।

वहां पर एक ब्राउन कलर का गेट है गेट के बाहर में बोरा है बोरा का कलर ब्राउन है।

यह एक मैदान का दृश्य है यहां पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

एक बर माला का कुर्सी रखा हुआ है बर माला के कुर्सी का कलर लाल है।

एक सिलेंडर जैसा गैस रखा हुआ है।

यह एक ब्लॉक के बाहर का दृश्य है जहां पे एक बूढी दादी खड़ी है।